यहां पे देखियेगा फ्रेंड इस पिक्चर मे एक हॉल दिखाई दे रहा है और काफी सारे यहां पर --

और ऊपर देखिएगा आसमान दिख रहा है नीला नीला और ये नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

इस पिक्चर में देखिएगा काफी सारी बाइक्स खड़ी हुई है नीचे।

इस पिक्चर में देखिएगा यहां पर इन आइसक्रीम वियर लिखा हुआ है ये आइसक्रीम की शॉप है।

इस पिक्चर में देखियेगा सामने एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग नहा रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर और बाहर देखियेगा --

कई सारे लोग खड़े हैं और ऊपर देखिएगा सर्विस --

इस पिक्चर में देखिएगा सामने एक बैंक दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है एच_डी_एफ_सी बैंक --